सामने पोल दिखाई दे रहे हैं जो लोह के बने हैं इनके आसपास में कुछ चलती हुई ट्रेनें दिखाई दे रही हैं फर्श पे कुछ पानी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ मंदिर टाइप का दिखाई दे रहा है इसके पास में कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है।

कुर्सियों पे बैठे हुए है पास में कुर्सी लकड़ी की बनी हुई टेबले दिखाई दे रही है सामने एक मुझे बोर्ड दिखाई रहा है जिसमें कुछ --

और कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है और सरियों से बनी हुई रेलिंग भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक मकान दिखाई दे रहा है उसके गेट है जो जाली से बना --

और कांच की बनी हुई खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक पोल दिखाई दे रहा है जिसपे बहोत सारे--

इस तस्वीर में मुझे एक सीधा पिलर दिखाई दे रहा है जिसपे पोस्टर चिपके हुए हैं और पास में कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं।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

इस तस्वीर में मुझे डंबल दिखाई दे रहे हैं और लोहे की बनी हुई कुछ मशीनें दिखाई दे रही हैं जो --

इस तस्वीर में मुझे दो दुकानें दिखाई दे रही है और इन दुकानों के जो गेट हैं वो शीशे से बने हुए --

इससे तस्वीर में मुझे मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है मंदिर के पीछे मुझे पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ नाम भी लिखे हैं।